यह एक नदी दिख रहीं हैं।

और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

दिख रहा है और एक गिलास भी--

और दो बिस्तर है।

और सामने गाड़ी है उसपे ऑरेंज कलर का झिल्ली लगा है।

जो एक दूसरे से बात कर रहे है।

और वह हाथ फैला के खड़ा है शायद कुछ गेम वेम खेलने के--

जिसमें ऊपर तीन है और नीचे छे है और पेटीएम करने का उ लगा हुआ है और एक आदमी खड़ा है वहाँ बाइक भी हैं।

है। शायद और वहां पे दो आदमी खड़े हैं।

यह एक मस्जिद या गुरुद्वारा जैसा दिख रहा है।

और यहां पे कुर्सी टेबल लगा है।

सजावट का मूर्ति लगा हुआ है हाथ का।

जिम दिख रहा है जो जहां पर।

और चैन से पूरा बंधा हुआ है वो कार ।

है नीला कलर का --